नीले रंग की ये दुकान में पेंट हुआ पड़ा है।

जहाँ एक बहुत सुंदर सा नीला बैगनी सफ़ेद रंग का टेंट लगा हुआ है।

जो की काले रंग की है।

अनार हैं संतरा हैं।

अगल-बगल में लगे हुए --

कुछ ब बालिकाए कुछ पुरुष भी है।

जहाँ रंग-बिरंगे झूले लगे हुए हैं।